सामने देखिये स्विमिंग पूल दिख रहा है इसमें देखिये नीले रंग की पट्टी दी गयी है और ये देखिये बगल में टाइल्स लगी हुई है फर्श मंगाई गयी है और देखिये अगल बगल जो दीवाल बनाई गयी है वो --

सफ़ेद रंग का वस्त्र भी पहना हुआ है और पिले रंग का वस्त्र भी पहना हुआ हैऔर बिच में देखिये लाल रंग के गमछे टागे हुए है और जो पीछे की दीवार है वो सफ़ेद रंग की है और अगल-बगल देखिये बहुत सारे तारे है।

बने हुए है और यहाँ पर देखिए पीछे घड़ी रखी गई है और देखिए अगल-बगल दो पर्दे लगे हुए--

सामने चर्च है जिसमे ऊपरअ प्लस का चिन्ह बना हुआ है और अगल-बगल बहुत सारे घने पेड़ है और यहाँ पर देखिये सफ़ेद रंग का कुछ चित्र जैसा बना हुआ है मूर्ति जैसा --

मोटरसाइकिल खड़ी हुई है यहाँ पर देखिये जो दीवाल का रंग है वो सफ़ेद है निचे देखिये क्रीमी लगाई गयी है और ए रंग लगाए गए है और यहाँ पर देखिये अगल-बगल बहोत सारे घने पेड़ है और आसमान का रंग नीला है।

लगी हुई है और देखिये यहाँ पे जो दिवार का रंग है वो सफ़ेद है यहाँ पे देखिये जो आसमान का रंग है वो बैगनी है और नीला है और अगल बगल भी बहुत सारे घर है।

जूते भी पहने हुए है और यहाँ पे देखिये निचे रंग बिरंगे कुछ अ फ्लावर गिराए गए है और देखिये पीछे भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

पेन लिया हुआ है और यहाँ पर देखिये बहुत सारे इधर पैकेट दिख रहे है जो की लाल और काले में है और लाल सफ़ेद में है और इधर देखिये इधर भी कुछ प्लास्टिक --

सामने मिटटी जैसा जमींन भी है और उधर देखिये हरे- हरे छोटे हिस्से के घांस भी उगे हुए है और इधर देखिये लोहे का कुछ रखा गया है जो की नीले और पिले रंग में है।

यहाँ पर कुछ आदमी खड़े हुआ है और कुछ औरत भी खड़ी हुई है और यहाँ पे सभी ने सेफद रंग के वस्त्र पहने हुए है और यहाँ पे जो औरत है वो सर पे अपने पल्लू रखी हुई है और यहाँ पर जो आद --

और वहाँ पे देखिये कुछ आदमी खड़े हुए है और यहाँ पे देखिये एक आदमी है जो की बैग लिए हुए है और आसमान का रंग काला --

देखिये सामने पूल बना हुआ है सीलमिट का और यहाँ पे देखिये सीलमिट की रेलिंग लगी हुई है अगल-बगल यहाँ पे देखिये बोर्ड है जो कि काले रंग का है इधर देखिये बहोत सारे लोहै की पाइप रखी है जो कि काले रंग की है।

और वहाँ पर देखिये जो इधर रास्ता है वो मिट्टी के जैसा रास्ता है और अगल-बगल देखिये बहोत सारी हरी घाँसे भी है और कुछ सुखी घांस भी है और आसमान का रंग देखिये हल्का हरे में--

मेहरून में किया गया है और आसमान का रंग देखिये नीला है और यहाँ पर अगल बगल बहोत सारे घने जंगल जैसे पेड़ दिख रहे है।

के सामने एसबीआई का एटीएम है और यहाँ पे जो दिवार का रंग है वो सफ़ेद बिच-बिच देखिये में नील रंग की पट्टी दी गयी है और यहाँ पे देखिये निचे खम्भे की भी रंग अ नीले रंग की दी गयी हुई है।

सामने पूल है और यहाँ पे देखिये सीरमिट की रेलिंग बनाई गयी है जो की हरे रंग से रंग की गयी है और निचे देखिये छोटा सा दिवार बनाया गया है जो की काले और सफ़ेद रंग से रंग किया गया यहाँ पर देखिये सिरमिट के जैसा भी --

एक आदमी खड़ा है जिसने अपने हाथ को सूरज की ओर दिखाया गया है और आगे और एक आदमी खड़ा है।